यह तस्वीर एक खेल के मैदान की है।

जिसमें से सफेद धुआं निकल रहा है।

एक आदमी के गले में सीटी डली है।

एक गाड़ी की चाभी नजर आ रही है।